पोस्ट ऑफिस के बहार की तसवीर है। आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे है। दिन का समय धूप पड़ी है। नीचे बहुत सारी झाड़ी दिख रही है। स्कूटी दिख रहा है। एक व्यक्ति दिख रहा है जो हेलमेट पेहणा हुआ है।

दिन के समय आसमान मे कुछ बादल भी दिख रहे है आसपास बहुत बड़े बड़े मकान दिख रहे है बहुत बड़े बड़े झाड भी दिख रहे है।

यहाँ पर बहुत बड़ा गेट दिख रहा है गेट बंद है। आसपास बहुत से बड़े बड़े--

यहा पे बहुत बड़ा एंट्री गेट दिख रहा है बहुत बड़ा पत्थर के रास्ते भी दिख रहे है दीवार दिख रहा है बहुत बड़े बड़े वृक्ष दिख रहे है दिन का समय आसमान मैं कुछ बादल भी दिख रहे है।

आस पास बहुत बड़े वृक्ष भी दिख रहे है| बहुत सारी झाड़िया दिख रहे है।

यह जिम के अंदर की तस्वीर यहा पर बहुत सारे डंबल नजर आ रहे है जिम का सामान नीचे मैं टाईल्स लगा हुआ है जिम के दीवार का कलर ग्रीन अँड ग्रे कलर का है यहा पर बड़े बड़े मिरर भी दिख रहे है।

वृक्ष भी दिख रहे है झाड़िया भी दिख रही है बिजली के खंबे दिख रहे लाइट दिख रहे है दिन का समय है।

ये तस्वीर माँ दुर्गा मंदिर के बाहर की तस्वीर है मंदिर का गेट बंद है एंट्री गेट भी दिख रहा है सीढ़िया दिख रही है यहा समोर रूम भी दिख रहे है बहुत बड़े-बड़े वृक्ष भी दिख रहे है दिन का समय है धूप पड़ी है।

ये तस्वीर हंस सुपर बाजार बाहर की तस्वीर है बिल्डिंग के बाहर मे बडा सा बैनर लगवाया हुआ है बिल्डिंग भी दिख रही है जिसका कलर पीला कलर का है बिजली की तार बहुत सारे दिख रहे है दिन का समय है।

ये तस्वीर बाहर से ली गई तस्वीर है यहाँ आसपास बहुत बड़े बड़े चट्टान भी दिख रहे है नीचे भी बहुत सारे वृक्ष नजर आ रहे है ऐसे बहुत सारी झाडीया भी है बहुत सारा कोहरा भी छाया हुआ है दिन का समय--